ये एक वीटू स्टोर है वैल्यू एंड वैरायटी स्टोर यहाँ पर कपड़े बिकते हैं ज्यादातर और इसके ठीक ऊपर में करेयर पावर इंस्टिट्यूट है जहाँ पर एसएससी एमटीएससी की तैयारियां होती है।

उसके बाद खिड़की जहां पर से अपना खाना बनेगा उसको लोग दे सकते है।

बाल चौक रोड पर और वहाँ पे बहुत से लोग जूस पीने आये और वो एक।

और भी बहुत सारी गाड़ियां दिख रही हैं ऊपर में स्टील और नीचे मैं अच्छी खासी फ्लोरिंग ।

ये टोम्स कैफ़े की दृश्य हैं जो एपीजे अद्बुल कलम लाइब्रेरी के बाजू मैं हैं उस।

एक व्यक्ति दिख रहा हैं बैठा हुआ फ़ोन पे बात करते हुए उसके ऊपर में ठीक टीवी स्क्रीन हैं।

आज बाजू में रोड रोड के आजू-बाजू में बहुत सारे झाड़ लगाए गए हैं और रोड एकदम प्लान करके एकदम सीधा बनाया गया है और हर एक रास्ता हर एक बिल्डिंग के तरफ जाता है।

ऊपर में दो खिड़कियाँ दिख रही है एक खिड़की में लाइट नहीं है एक खिड़की में लाइट है जो बाबर्ची का रूम दिखाती है यहाँ पे बाबर्छी खाना बना।

ये एक कर वाश शॉप है जहाँ पर एक आदमी का हाथ दिख रहा है जिसमे नीले रंग का शर्ट पहना और रास्ते में एक घड़ा दिख रहा है।

एक आदमी अंदर सफाई करने आया हैं और बाजू में एक छोटा सा पानी का कुं कुंड दिख रहा हैं।

यह एक बगीचे का दृश्य हैं जिसका नाम लक्ष्मी कृष्णा ग्रीन लैंड हैं ऊपर मैं।

यह एक पुराने जमाने के अधीन कल का एक मंदिर का दृश्य है जो सिर्फ पत्थर से बना हुआ है।

जो जिनको इनकी जरूरत हो वो खरीद के ले जा सकते हैं वहाँ पे इनको पाल इन फूलों को संभालने वाले का घर दिख रहा है टीम का बना हुआ है येलो ब्लू कलर का--

पीछे की दीवाल का कलर सफ़ेद हैं और फ्लोर का कलर क्रीम हैं अच्छे से टाईलिंग हुई हैं ।

यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े लेडीज वियर के दिख रहे हैं इसका मतलब कि ये शॉप एक लेडीज वियर शॉप हैं जहाँ।